जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूं ये एक कैफेटेरिया है।

दो लड़के खड़े हुए हैं। यहाँ पे अध्यापिका भी खड़ी हुई है।

अपनी-अपनी टेबलों में बैठे हुए हैं।

और यहाँ पे कुछ तरह-तरह की चीजें रखी हुई हैं और डस्टबिन भी रखा हुआ है।

दुकान है जो कि कपड़ों का दुकान है। ये दुकान में --

जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूं ये एक बहुत ही बड़ी सी हॉस्पिटल है।

जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूं ये एक बस स्टॉप है।

जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूं यह एक बदान इंस्टीट्यूट आफ मैंनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है।

साइकल लेके एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

यहां पे दो ऑटो रिक्शा खड़े हुए हैं।

पर्पल कलर का शर्ट पहना हुआ है।

और इस रूम का कलर सफेद है।